मिलेगा आप यहाँ से आकर एक बार खाना यहाँ का ट्राय कर सकते हो डेकोरेशन भीं बहोत अच्छे से की गई--

उस पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो।

इस तस्वीर में एक बेकरी शॉप को दिखाया गया है।